इस दृश्य में एस.बी.आई. बैंक दिखाया गया है।

लाल है जहाँ पर कुछ लोग है कुछ लोग अंदर है कुछ लोग बाहर है।

एक पुरुष खड़ा हुआ है और एक चल रहा है और जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है ।

ग्रीन है और ये लकड़ियों पे गिलहरी है सुखी लकड़ियां है ।

खिड़कियाँ हैं और पेड़-पौधे हैं सड़क पर दिखाया गया है सरियों को दिखाया गया है ।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट को दिखाया गया है जिसका नाम गार्डन टॉप रेस्टोरेंट है।